यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है जिसका नाम द बर्गर कंपनी है।

यहां पर एक बहोत बड़ा मजबूत पाया नजर आ रहा है जोकि लाल कलर का है और बड़ा है।

सामने एक लड़का और एक लड़की बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत हरे भरे और बरे बरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं दूर में घर भी है।

उसके हाथों में कुछ है जिससे वह कार के टायर साफ कर रहा है।

अगल बगल लाइटें भी लगाई गई है लैंप भी लगायी गई है।

यह किसी दुकान का चित्र नजर आ रहा है यह मोबाइल दुकान है।

ऊपर में एक स्टार जैसा टंगा हुआ है।